और यहाँ पर ये गाडियाँ खड़ी हो रखी हैं इस भवन के नीचे और इसके --

और ये बिल्डिंग है कितनी सुंदर लग रही है ये।

साड़ीज वगैरा हर चीज लगी हुई है चटनी वगैरा बहोत ही अच्छी दिख रही है ये बनी हुई भी।

पेड़ वगेरा है ये भी कित सुंदर लग रहें है बिल्डिंग काफी सुंदर लग रही है और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी होरी --

लग रही है और फ्रेंच फ्राइज भी बहोत अच्छी लग --

कितनी अच्छी लग रही हैं और यहाँ पे कितनी अच्छी से फूल रखा है यहाँ पर।

और यहाँ पड़ एक बिल्डिंग भी है कितनी अच्छी लग रही है ये देखने में बोहोत ही सुंदर लग रहा है इसे --

ये और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है इस कैफ़े के आगे --

बनी है और यहाँ पर एक गेट है गेट भी कितना अच्छा लग रहा है।

बोहोत ही अच्छा लग रहा है इसे देखकर। यहाँ पे स्कूटी खड़ी हुवी कि बोहोत अच्छी लग रही है स्कूटी ।

बहोत ही शानदार जगह है ये और आपको दिख रहा होगा की --

ड्रेस भी बहोत अच्छा पहन रखी है कपड़े भी इनके उपर बहोत अच्छे लग रहे हैं।

हेलो दोस्तों जैसे की आप देख रहे होंगे की --

और इसकी डेकोरेशन कलर की फूलों से बहोत ही अच्छा लग रहा है गमले लग रखे नीचे --

कितनी सुंदर लग री हैं और इसे दिख कर कितना सुंदर लग रहा है।